working with remote repositories पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगेremote repository के बारे में और
remote repository पर data को synchronize समक्रमिक करने के बारे में
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux 1404
git 232
gedit text editor और
firefox web browser
आप अपनी पसंद का editor और web browser उपयोग कर सकते हैं
इस tutorial के लिए आपको एक कार्यरत internet connection की ज़रुरत होगी
आपको git commands की बुनियादी जानकारी भी होनी चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित git tutorials के लिए कृपया प्रदर्शित link पर जाएँ
पहले सीखते हैं कि remote repository क्या है
एक रिपॉज़िटरी जो internet या किसी भी network पर होस्ट किया जाता है remote repository कहलाता है
इस केंद्रीकृत रिपॉज़िटरी का उपयोग करके लोग विश्व में कहीं से भी किसी भी समय एक project पर सहयोग कर सकते हैं
उदाहरण के लिए मानिए तीन users हैं जो एक ही रिपॉज़िटरी पर संयुक्त रूप से कार्य करना चाहते हैं
git उनको उनके local system पर remote repository की एक copy लेने की अनुमति देता है
यह clone command उपयोग करके किया जाता है
फिर वे local रिपॉज़िटरी के साथ offline काम कर सकते हैं
एक बार जब काम पूरा हो जाता है तो वे वापस main रिपॉज़िटरी पर synchronize करते हैं
यह push और pull commands उपयोग करके किया जायेगा
आप पूरी प्रक्रिया इस tutorial के अंत तक समझ जायेंगे
पहले हम अपनी github repository खोलेंगे जो हमने पहले बनाई
दायीं तरफ हम इस रिपॉज़िटरी का url देख सकते हैं
इस url को copy करें
एक local रिपॉज़िटरी बनाने के लिए हम we url उपयोग करके इस रिपॉज़िटरी की एक copy बनाने वाले हैं
terminal खोलें
अब सीखते हैं कि एक ही रिपॉज़िटरी में दो users कैसे कार्य कर सकते हैं
इसके लिए मैंने पहले ही अपने desktop पर user1 और user2 named दो डिरेक्टरीज़ बना ली हैं
आप भी अपने desktop पर ऐसा करें
उसी terminal में मैं 2 भिन्नभिन्न tabs में वो डिरेक्टरीज़ खोलूँगी
पहली टैब में type करें cd space user1
दूसरी टैब खोलने के लिए file menu पर click करके open tab चुनें
दूसरी टैब में type करें cd user2
tab टैब user1 पर जाते हैं
अब remote repository की एक copy बनाते हैं
type करें git space clone और फिर copied की हुई url paste करें space और इस command के अंत में एक dot लगाएं
dot दिखाता है कि हम उसी directory यानि user1 में वो repository copy करने वाले हैं
अन्यथा यह रिपॉज़िटरी के साथ stories नामक एक नयी directory बनाएगा
अब enter दबाएं
clone command पूरे केंद्रीय folder को copy करेगा और इसे local रिपॉज़िटरी की तरह बनाएगा
type करें ls आप देख सकते हैं कि remote repository की विषय वस्तु यहाँ copied की गयी है
आगे ठीक से समझने के लिए मैं इस रिपॉज़िटरी का यूज़रनेम और email id बदलूँगी
प्रदर्शन के लिए मैंने पहले ही दो github userspriyaspoken1 और kaushikspoken बना लिए हैं
मैं यहाँ उन्हें उपयोग करुँगी
अब git log check करते हैं
आप remote repository के समान commits देख सकते हैं
इसी प्रकार दूसरी टैब में directory user2 के अंदर मैं रिपॉज़िटरी clone करुँगी
यहाँ भी मैं यूज़रनेम और email id बदलूँगी जैसे मैंने पहले user1 के लिए किया
आगे समझते हैं कि वे users remote repository में कैसे कार्य करेंगे
मानिए user1 lionandmouse html named फाइल पर कार्य करेंगे
file बनाने के लिए type करें gedit lionandmouse html
मैं अपने writer document से कुछ text जो मैंने पहले सेव किया था इस फाइल में copy paste करुँगी
इसी प्रकार आप अपनी file में कुछ विषय वस्तु लिख सकते हैं
add file को staging area में जोड़ते हैं
type करें git add lionandmouse html
आगे नयी जुडी हुई file को commit करते हैं
type करें git commit hyphen m quotes में added lionandmouse html
आगे हमें main remote repository के साथ local रिपॉज़िटरी को synchronize करना है
रिपॉज़िटरी को सिंक्रनाइज़ करने से पहले हम remotes के बारे में सीखेंगे
remote repository का url remote कहलाता है
हम url को निकनेम we सकते हैं
जब हम बहुत सी remote repositories पर कार्य करते हैं तो यह उपयोगी होगा
जब हम रिपॉज़िटरी को synchronize करते हैं तो हम पूरा url टाइप करने के बजाय केवल निकनेम उपयोग कर सकते हैं
remote का default निकनेम हमेशा origin होता है
add remote को जोड़ने के बारे में सीखते हैं
आगे terminal पर वापस आएं
type करें git remote आप देख सकते हैं कि remote का default name origin है
आगे देखते हैं कि remote को निकनेम कैसे देते है
type करें git remote add stories और remote रिपॉज़िटरी का url type करें
यहाँ मैं remote को stories name दूँगी जोकि remote रिपॉज़िटरी name है
अब enter की key दबाएं
दोबारा remote सूची जाँचने के लिए type करें git remote
आप देख सकते हैं कि remote सूची में जुड़ गया है
अब हम local रिपॉज़िटरी को main remote रिपॉज़िटरी के साथ synchronize करेंगे
इसके लिए type करें git push stories master
यहाँ stories उस remote का name है और master उस branch का name है जहाँ हम बदलाव अपडेट करते हैं
अब enter दबाएं
मैं user1 के username में priyaspoken1 type करुँगी और enter दबाऊँगी
user1 से सम्बंधित password type करें
याद करें प्रदर्शन के लिए यह यूज़रनेम मैंने पहले ही बनाया
आप यहाँ अपना यूज़रनेम और password उपयोग करें
यह unable to access error देता है
यह error क्यों आयी इसका कारण है कि हमारे पास remote repository का access नहीं है
अतः अब सीखते हैं कि कंट्रीब्यूटर को access permission कैसे देते हैं
github repository पर वापस जाएँ
panel पर ऊपर आखिरी टैब settings पर click करें
फिर बायीं तरफ के box में collaborators पर click करें
पुष्टिकरण के लिए अपना github account password type करें
यहाँ text box में names collaborators collaborators के names लिख सकते हैं
समझ लें कि इस github repository में कोई भी clone कर सकता है
लेकिन who लोग जिन्हे हमने collaborator की तरह जोड़ा है repository पर push हो सकते हैं
add मैं दो users priyaspoken1 और kaushikspoken को जोड़ूँगी
जब मैं text box में type करती you तो आप यूज़र का name सूचीबद्ध देख सकते हैं
collaborator को यूज़र की तरह जोड़ने के लिए add collaborator button पर click करें
मैं अन्य यूज़र kaushikspoken को भी जोड़ूँगी
यहाँ आप देख सकते हैं कि जोड़े हुए names सूचीबद्ध हैं
अब हम remote repository में push करने की कोशिश करते हैं
terminal पर वापस जाएँ
type करें git push stories master
यूज़र का who यूज़रनेम और password टाइप करें जिसको रिपॉज़िटरी का access हो
आप देख सकते हैं कि यह सफलतापूर्वक हो गया है
आगे देखने के लिए कि क्या हमारे बदलाव अपडेट हो गए हैं github repository check करते हैं
github repository पर वापस जाएँ
code टैब पर click करें
अब commit list check करें
आप देख सकते हैं कि collaborator का commit यहाँ सूचीबद्ध है
आगे सीखते हैं कि user2 remote repository के साथ कैसे collaborate कर सकता है
terminal पर वापस आएं
मानिए user2 friends html named file पर कार्य कर रहा है
file बनाने के लिए type करें gedit friends html
मैं अपने writer document से इस फाइल में कुछ text copy और paste करुँगी
उसी प्रकार आप अपनी file में कुछ विषय वस्तु जोड़ सकते हैं
add file को staging area में लाते हैं
आगे नयी जोड़ी हुई file को commit करते हैं
type करें git commit hyphen m quotes में added friends html
आगे हमें local रिपॉज़िटरी के साथ main remote repository को synchronize करना है
type करें git push origin master
याद रखें हमने इस local रिपॉज़िटरी पर remote नहीं जोड़ा
अतः यहाँ हम remote का default name origin उपयोग कर रहे हैं
अब enter दबाएं
user2 का github यूज़रनेम और password type करें
यह failed to push error देता है
यह error का कारण भी दिखाता है: the remote contains work that you do not have locally
याद रखें कि user1 ने पहले ही एक commit दिया है
लेकिन user2 अपनी local रिपॉज़िटरी में user1 का काम नहीं रखता है
error में संशोधन हेतु git pull command को रन करने के लिए यह सुझाव भी देता है
अतः पहले हमें user1 के काम को हटाना है और इसे user2 की local रिपॉज़िटरी में रखना है इसे अभी करते हैं
type करें git pull origin master
पहले यह remote रिपॉज़िटरी से data निकलता है फिर इसे local रिपॉज़िटरी में merge करता है
अतः यह merging हेतु एक message देने के लिए editor खोलता है
अब उस message को रखते हैं और ctrl + x दबाकर editor को बंद करते हैं
अब दोबारा data को लाने की कोशिश करते हैं type करें git push origin master
user2 का यूज़रनेम और password टाइप करें
आप देख सकते हैं कि हम अब सफलतापूर्वक data को ला सके हैं
आगे हमारे बदलाव अपडेट हो गए हैं या नहीं यह देखने के लिए github repository को check करते हैं
github repository पर वापस आते हैं
रिपॉज़िटरी name stories पर click करें
आप देख सकते हैं कि file friends html अब रिपॉज़िटरी पर जुड़ गयी है
अब commit list check करते हैं
आप देख सकते हैं कि user2 का commit भी यहाँ सूचीबद्ध है
इसके साथ हम इस tutorial के अंत में आते हैं
इसे सारांशित करते हैं इस tutorial में हमने सीखा
remote repository के बारे में और
remote repository पर data को synchronize करने के बारे में
नियत कार्य में user3 named एक और यूज़रनेम बनाएं
user3 के लिए data clone करें
user3 की local रिपॉज़िटरी पर काम करना शुरू करें और
user3 से data को push करने की कोशिश करें
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है
इसे download करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं चलाती है और online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है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
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद